एं ऊपर में वाईट कलर के नीचे थोडा ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है।

दे रहा है ऊपर से छत दिखाई दे रहा है | कत्थे कलर के पत्ते दिखाई रहे हैं | बगल में बॉउंड्री जैसी खम्भे दिखाई दे रहे हैं | एक हरे कलर की मेट बिछी हुई --|